और उसके बाहर कई रिक्शा वाले लोगों को ले जा रहे हैं।

मुझे इस चित्र में पवन नामक--

कई सारी ट्रॉफीज रखी हुई दिख रही हैं।

जिसमें की शॉप कीपर प्रिंट कर रहा है।

जिसमें की एक ऑटो और काफी सारी गाड़ियां खड़ी हैं।

इस चित्र में मुझे एक टायरों की दुकान दिख रही है। जिसमें की बेंच चेयर --

लगे हुए हैं फूल गुलाब के लगे हैं और एक झूला भी है।

दुकान दिख रही है जिसमें की बहोत सारा सामान और एक टेबल पड़ी हुई है।

जो कि रोड बनाने में इस्तेमाल हो रहा है।

सलाद का एक काउंटर लगा हुआ--

मुझे इस चित्र में ब--

आ रही हैं जो की लाल और ग्रे कलर की हैं।

आयुर्वेदिक की दुकान दिख रही है।

जिसमें कि बहोत सारा किराने का सामान दिख रहा है।

समुद्र नजर आ रहा है जिसमें की बहुत साफ पानी और पीछे की तरफ--